नीले रंग की बगल में एक और दीवाल दिख रही है जिम में यूज़ होने वाली बहुत सारी मशीने --

इसमें सफ़ेद रंग का एक बड़ा वाला घर है।

रोड के आस - पास की जमीन लाल दिख रही है।

और छोटे पौधे डार्क हरे दिख रहे है।

चार पिलर दिख रहे हैं तीन एक साथ में है और एक अलग दिख रहा है ऊपर दो लाल रंग के बॉक्स जैसे भी--

सामने एक दुकान है जिसके ऊपर ए _वन --

बगल में एक लाल कलर के बाल्टी रखी है लड़के ने सफ़ेद रंग के कपड़े पेहन रखे है एक और लड़का सामने खड़ा है दुकान के अंदर और भी लोग दिख रहे हैं।

इसमें एक बहोत बड़ी नदी दिख रही है जिसके अगल-बगल में हरे रंग के बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है।

खड़ा हुआ है जो एक मिसाइल जैसा दिख रहा है सामने बड़े - बड़े --

लकड़ी के टाप पर आदमी लेटा हुआ है उसने काले कपड़े पेहन रखे है उसका एक पैर दूसरे व्यक्ति ने पकड़ रखा है उसके हाथ में सफ़ेद रंग के ग्लव्‍स हैं।

पास में एक काले रंग की पानी की कैन जैसा कुछ रखा है जिसमे नीले रंग के डिज़ाइन बना है सामने एक व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है।

सामने एक प्लस जैसे रोड बना हुआ है जो प्लस का निशान होता है वैसा उसमे चक्र बना है।

और बगल में बड़े-बड़े पौधे लगे हुए है बोहत ज्यादा हरे रंग के--

और व कतथई कलर का टेबल है जब की उस आदमी के पीछे एक और अंधा आदमी दिख रहा है उसका चेहरा साफ़ नहीं दिख रहा पीछे बैनर लगा है।

चार -पाँच गड़ी आई है जिनके बीचे में लम्बी लकड़ियाँ रखी है ऊपर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा रखा है और एक मोर उसके ऊपर बैठा हुआ हैं।

दीवार पर लाल रंग के बहोत सारे फुग्गे लगे है जिसमे दिल आकार जैसा बना है ऊपर छत पे भी कुछ लाल रंग के भी फुग्गे लटके हुए है।